हमें यहाँ पर एक स्कूल के बच्चे नज़र आ रहे है जो की लाइन से बैठे हुए है बच्चे के आगे टेबल लगी हुई है।

ऊपर जो छत है उसमे गार्टर लगी हुई दिखाई दे रही है।

पीछे बहुत सारे पेड़ नज़र रहे है खंभा नज़र आ --

उसके बगल में भी कुछ बिल्डिंग बनी हुई है।

यहाँ टेबल पे एक शार्क रखी हुई है।

काँच लगा हुआ है गेटों में --

इसके ऊपर द एक्शन रुम स्पीक लिखा है।

काफी ज्यादा दूरी नजर आ रही है यह --